इसके अंदर हम लोग जाते हैं।

यह गाड़ी पार्किंग करने की --

और ये बहुत ही बढ़िया-बढ़िए बैलून है।

बिकते हैं और ये बहोत ही बढ़िया --

गर्मी में ये दुकान खोल और --

यह एक मछली की दुकान है। यहाँ पे बोहोत ही बढ़िंया बढ़िंया मछली ताजी-ताजी मछली बिकती है।

और ये मंदिल बोहोत ही बढ़िया इसके अंदर एक पंखा भी है।

और ये मंदिल बोहोत ही अच्छा। यहाँ पे बोहोत ही जादे भीड़ होती है।

जो आर्ट क्लास है जिसमें एक ब --

हम यहाँ पे होते तो हस्ते नहीं रो --

जो ठीक गोले में ये निश्चित --

यहां से दूसरे देश में --

और बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही बड़िया है।

मछली का इंतज़ार कर रहे तुरंत मछली आई तुरंत झपकेगी तुरंत अपने पेट में डालेगी अपना भूख --